यहां पे नारियल के पेड़ लगे हैं और शोपीस के पेड़ लगे हैं साइड के सड़क के--

और एक आदमी है जो प्लेटें उठा के जा रहा है और एक आदमी कुछ तल--

सामने की तरफ सीढ़ियां लगी है और बहोत दीवाल लगी हुई है।

यह विजन पब्लिक स्कूल का गेट है और यहां पर हमम--

और यहां पे साइकिल भी खड़ी हुई है बोहोत सारी और सामने की तरफ बहोत सारे पेड़ है और यहां एक लाइट भी लगी हुई है।

यह एक बिल्डिंग है और इसमें के_जी_एन सहज जन सेवा केंद्र--

और कुछ पेपर भी रखे हुवे हैं और ऊपर की तरफ बहोत सारी शीशियाँ रखी हुवी हैं।

यह किसी गार्डन का सीन है और यहां पर जो है चारों तरफ गार्डन के जो है जाल लगा हुआ है और अंदर की तरफ बल्फ है।

और बारिश अभी अभी हो के रुकी है।

जो यहां पर चारों तरफ इसके पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और लाइटे भी लगे हुए हैं।

एक कार का सीन है और यहां पर एक आदमी दरवाजे खोलके खड़ा है दूसरा आदमी यहां पे कार में अंदर सफाई कर रहा है और अंदर कार में तौलिया बंधी हुई है।

खड़ा हुवा हैं और एक की तरह पत्थर पड़ा हुवा हैं।

ये एक रेस्टोरेंट का सीन हैं और यहाँ पर बहोत दूर तक एक अ मेज पड़ी हुई हैं और उसके चारों तरफ कुर्सी हैं और ये मेज के ऊपर भीं कुर्सियाँ रखीं हुई हैं।

सामने की तरफ काउंटर हैं और तीन चार आदमी बैठे हैं लैपटॉप लेके--